हाथ जोड़ के मुद्रा पे है एक बच्चा दिख रहा है लिल्लि शर्ट ।

आपन पैंट पहना हुआ है बहुत सारे पर्दे और दिख रहें हैं जो की गुलाबी रंग के हैं।

जो भटे कलर के शर्ट पहने हुए है।

कांच का एक शोरूम दिख रहा है।

ज्यादा पेंडा ही पेड दिखाई दे रहे हैं सफेद आसमान के घिरा हुआ ये मैदान।

मैदान दिख रहा है हर तरफ घास दिख रही है घास का रंग भी हरा दिख रहा है आस-पास भी बाउंड्री दिख रही है।

हर तरफ पत्थर ही पत्थर है पत्थर का आदमी एक सामने दिखा है।

आदमी ने काले रंग की शर्ट पहना हुआ है एक उंगली दिखाई दे रही है।

हरे घास दिख रहें हैं जो हरे कलर के पत्ते हैं काला जूता दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ पेड़ दिख रहे हैं पेड़ के पत्तियों का रंग हरा है मैदान का रंग भी --

चॉकलेटी है गेट दिख रहा है जो कि चॉकलेटी कलर की है फेंसिंग बनी हुई है बाउंड्री वॉल बनी हुई है।

लटके हुए गमला दिख रहा है।

एक दुकान दिख रही है दुकान के बाहर एक पत्ता लगा हुआ है पत्ते का रंग हरा है।

फूल दिख रहे हैं जो फूल का रंग नारंगी है बहुत सारी बोरियां दिखाई दे रही है।

बहोत सारी पाइप दिख रहे हैं जो कि --

काले कलर के हैं पेड़ दिख रहे हैं पेड़ के पत्तियों का रंग हरा है।

बहुत बड़ा एक मार्केट दिख रहा है। मार्केट में एक रोड दिख रही है रोड पे एक आदमी चलते हुए दिख रहा है जो की काले पैंट पहने हुए हैं काली चप्पल पहने हुए हैं एक --

हरा पर्दा दिख रहा एक आदमी दिख रहा है।

बड़ी-बड़ी दीवालें हैं लाइटिंग सूरज की रौशनी दिख रही है खिड़की दिख रही है।

चारो तरफ़ पेड़ लगें हैं पेड़ की पत्ती का रंग हरा है नीचे भी पेड़ लगे हैं ऊपर भी पेड़ लगे हैं महिला दिख रही है जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है बैग टांगी हुई है।

बहुत बड़ा टंकी दिख रहा है टंकी का रंग लाल है टंकी के ऊपर क्लीयरेंस लिखा हुआ है उसके सामने एक बेन --

एक चित्रा बना हुआ है पॊस्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है।

एक रूम दिख रहा है रूम में बहोत सारे फूल रखे हुए हैं फूलों का रंग नारंगी है पीला है एक एक ऐना दिख रहा है ऐने में भी --

इमारत दिख रही है इमारत का रंग सफ़ेद है हरा है में उनके रंग भी सफ़ेद है।

एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग की दिवालो का रंग --